साफ सुथरा है दो जो बस लगा हुआ है वो सेम कलर का है।

ये एक रूम है जहां पे सजाया हुआ है लगता है बड़दे का --

ये एक बड़ा सा हॉल है जिसमे एक टेम्पो लगा हुआ है जो नया है और एक आदमी खड़ा हुआ है।